कई तरह-तरह के कपड़े मिलते है यहाँ --

यहाँ पे काफी हरा-भरा घास दिक --

मॉल है। मॉल काफी बड़ा है।